ऊपर दीवाल भी दिखाई दे रही है जिसका कलर है यहाँ पे बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं ।